सड़क पर दो मज्जा जा रहीं बी दिखाई दे रहीं हैं।

एक पैलेस दिखाएं दे रहा है।

दे रहा है जो कि बंद पड़ा हुआ रखाई दे रहा है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसका कलर रेड ब्लैक ग्रे और ब्लू कलर का दखाई दे रहा है।

पड़े हुए दकाई दे रहे है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक मार्केट दिखाई दे रही है।

कई स्टूडेंट चेयर पर बैठे हुए हैं और --

जिसमें बहुत सारी दवाई पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक रूम दखाई दे रहा है जिसमें--

एक गार्डन दिखाई दे रहा है।